मुस्लिम धर्म के लोग अपने मन की शांति के लिए मस्जिद जाते हैं।

जहां पे स्कूलिंग खत्म होने के बाद --

अरे ये बोहोत बड़ी पैलिस नहीं है छोटी पैलेस है इसलिए छोटी पैलेस है।

वो बस से आते है और जो काफी नजदीक से आते है वो पैदल ही बच्चे --

लोगों को एक अत संतुष्टि भी मिलती है।

जहां पे क्रिकेट का मैदान है।